जहां ट्रेन चल रही है यहां पर बहोत से आदमी दिख रहे हैं।

दिख रहे हैं और एक लाल कलर की कुर्सी भी रखी हुई है और एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो की दिख रहा है।

यह एक नदी तालाब की फोटो दिख रही है जो की नदी पूरी भरी हुई है इसके अगल बगल--

एक मंदिर की तरह दिख रहा है ये जगदीश सर्व विजयते--

दिख रहा है जहां पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और कुछ व्यक्ति--

यह एक स्कूल की तरह दिख रहा है जो कि बहुत ही बड़ी मंजिल दिख रही है और इसके अगल बगल--

यह एक ट्रैवलिंग एजेंसी दिख रही है जिसमें ट्रैवलिंग एजेंसी में बसे को ट्रैवलिंग की जाती है और ये--

मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है और एक घड़ी भी लगी हुई है और उसके आसपास बहुत से आदमी भी घूम रहे हैं।

यह एक मोटर दिख रही है जो कि मोटर खेत में बहुत ही उपयोग आती है।

यहां पर एक आईना भी दिख रहा है और इसमें सजावट भी बहोत अच्छी--

बॉडी बना रहे है और पीछे भी एक व्यक्ति है जो कि दोड रहा है।

फूल का मग भी रखा हुआ है और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक पे टी_एम भी रखा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

दो इंजीनियर अपनी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और यहां पर--

रेलगाड़ी के टायर बन रहे हैं जोकि बहोत ही साफ साफ दिख रहा है और पीछे मालगाड़ी भी खड़ी हुई है।

यह एक चर्ज की बाहर की फोटो दिख रही है।

यहां पर बहोत सी पब्लिक खड़ी हुई है और डांस शो का आनंद ले रही है यहां बस से स्टेज पर भी है।

और कुछ व्यक्ति जिम करवा भी रहे हैं ये बहोत ही खूबसूरत फोटो लग रही है यहां पर बहोत ही साफ सफाई भी है।